यह एक ट्रेन की पटरी है । यहाँ ट्रेन आती जाती रहती है बहुत लोग इधर उधर जाते हैं।

ट्रेन यहाँ पे आती है इधर बहुत हरा-भरा है पेड़ है।

यहाँ से सब लोग बुक खरीदते हैं और बुक बहुत आदमी खरीदने भी --

फराए रहे हैं यह हमारे इंडिपेंडेंस डे --

बहुत नामी स्कूल है यहां बहुत सारे बच्चे आते हैं।

यह एक बाजार है। यहाँ मार्केट में काफी भीड़ लगे हुए है।

यहां का पेंट सब उखड़ रहे हैं यह मंदिर बहुत बड़ा है।

हो के बोहोत सुविधाएं मिल रही है। इसे हम लोग टोटो कहते हैं।

बहुत सुंदर है। यहां पे पेंटिंग कोई देख रहे हैं कोई लगाएं है।

ओके हम लोग को बहुत सुविधा मिलती है। बस गेंदे फूल से सजाए गए हैं गुलाब फूल से सजाए--